इसमे बहोत सारे हाॅल है बड़ी बड़ी जाली है बहोत बड़ा नेट है।

ये एक जिम है यहां पर बहुत सारी मशीनें हैं।

कोई हाईट के लिए और कोई वेट के लिए।

यहां एक छोटा सा टेंपो है।

बहोत सारे बिजली के तार हैं।

जैसे हिरण शेर टाइगर एक छोटी सी झोपड़ी है।

यहां पर खुला नीला आसमान है।

यह एक फ्लैट है यहां पर चारों तरफ हरी भरी घास है।

यह एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

यहां पर एक पंखा है यहां पर बड़ी बड़ी पेटी हैं।

पहाड़ है बड़ी सी नदी है बहोत सारे पेड़ हैं।